ब्लैक कलर के मोटे मोटे टायर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक टक्टर दिखाई दे रहा है लाल रंग का--

कुछ बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

स्कूल की बिल्डिंग में खिड़की लगी हुई नजर आ रही है कांच की जिसका कलर ब्लू है।

सामने पर्पल कलर के बोर्ड में व्हाइट कलर से डी_डी वर्ल्ड स्कुल लिखा हुआ नजर आ रहा है फ्लावर से सजा हुआ है व्हाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

नेश्नल फ्लैग दिखाई दे रहा है। स्टेज बना हुआ है। लाल कलर का दरी बिछा हुआ है जिसमे --

यह एक शॉप है जिसके दीवाल का कलर रेड है स्टार से सजा हुआ है लाइट्स जल रहे हैं।

बहोत सारे समान नजर आ रहे हैं खंड में--

लाइट्स नजर आ रही है ब्राउन कलर की दीवार में

लाल कलर की खिड़की दिखाई दे रही है बाल्की बनी हुई है।

वहां शेर बना हुआ दिखाई दे रहा है सिल्वर कलर का ग्रिल दिखाई दे रहा है मार्बल का पत्थर --

सामने कपड़े की दुकान नजर आ रही है।

नीले रंग के उपर मे श्री राम जी खड़े हुए नजर आ रहे है साइड मे गमला लगा हुआ है।

सामने एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है ऊपर ऑरेंज कलर से--

एक ब्लैक कलर का गेट दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप के बाजू--

यहां कुछ लोग पैसे निकाल रहे हैं एक आदमी हेलमेट लेकर बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है।

तराजू बट दिखाई दे रहा है।

जिसमें पहले स्टैंड रखाया हुआ नजर आ रहा है।

खिड़की बनी हुई है जिसमें येलो और रेड कलर के पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

सामने पलंग नजर आ रहा है वाइट कलर की शीट बिछी हुई है।

ब्लैक और दिवाल नजर आ रहे हैं भूरे रंग का सोफा नजर आ रहा है एक ब्लैक टेबल नजर आ रहा है जिहां पे कुर्सी है।

खंड बना हुआ है जिसमें परदे लगे हुए हैं।

बिल्डिंग में वाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें एक औरत की फोटो नजर आ रही है बिल्डिंग के नीचे भूरे रंग का शटर दिख रहा है।

एक लाल रंग से आपातकालीन लिखा हुआ नजर आ रहा है भूरे रंग का दरवाजा--

व्हाइट कलर की दीवाल में कपड़ा टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं दो औरत खड़ी हुई देख रही है।